और इसके सबसे ऊपर और सबसे नीचे ट्रेडर्स का हॉलमार्क लगा हुआ है।

यहां पर ये बन रहे है और इसके आस पास कुछ टेबिल रखा है टेबिल है।

और यहां पर दो व्यक्ति खड़े हुए अपने फोटो शूट करा रहे आस पास अं--